फिर उसके भी साइड में कुछ बड़े-बड़े पेड़ है और कुछ होटल वगेरा है कुछ घर वगेरा भी बने हुए है कुछ लाइटिंग वगेरा--

झंडे वगेरा लगे हुए हैं। साइड में भी मंदिर है। मंदिर में भी कुछ लोग वगेरा खड़े है। उधर साइड भी लाइटिंग लगी है। साइड बाहर पेड़-पौधे भी लगे हैं।

जिम है। जिम के अंदर जिम का सामान वगैरह रखे हुए हैं। कुछ काँच वगैरह भी लगे हुए हैं। जिम की मशीन के ऊपर तीन बैलून लगे हुए है दो रेड एक ब्लैक ।

भार औ बैंबू वगैरा लगे हुए हैं नीचे भी पहले से ही घर बना हुआ है।

कुछ ग्रीन - ग्रीन कलर के पत्ते वगैरह भी रखे हैं स्टेज के सामने ही जस्ट स्टेज में फूल वगैरह सजे हुए हैं आइट साइड फूल वगैरह भी लगे हैं पीछे एक पेड़ है आइट साइड घर बना हुआ है आगे सीढ़ी हैं।